यहपै एक समुद्र हेगा। और उस समुद्र के किनारे पर काफी सारे पहाड़ है। यहापर सिर्फ समुद्र ही समुद्र और पहाड ही पहाड़ नज़र आ रहे हेंगे।

यहाँ पर एक काफी बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है। जो बोहोत ही सुन्दर है। और बोहोत खूबसूरत है। और ये बिल्डिंग काफी बड़ी है ।इसके पास आगे कुछ गार्डन बनाया गया है। जहाँ पर कुछ पौधे लगे हुए है।

यहां पर रूट की साइड में एक बोहोत बडी बिल्डिंग बनी है। बिल्डिंग में काफी सारे बैनर लगे हुए है।

यहापर रोड के साइड में एक मस्जिद बनी हुई है ये बहोत बड़ी मस्जिद है मस्जिद के नीचे आगे की साइड दुकान खोली हुई है।

आगे पर्दा लगा हुआ हेगा और उसमे कुछ लाइटिंग लाइटे लगी हुई है यहां पर और यहां पर लाइन से बोहत सारी सीटे लगी हुई हेंगी।